इसमें डिवाइडर बना हुआ है तार टाइप सा लगा हुआ है और पीछे बहीत सारे सारे पेड़ लगे हुएं हैं।

बहोत सारे बच्चे कलर ड्रेस में हैं और बहोत सारे बच्चे ड्रेस में हैं कुर्सियां पड़ी हैं बहुत सारी और ये कुछ रखा हुआ है पैक पन्नी में।

बच्चों टाइप से ही बैठे हुए है मेल या फीमेल ये सब लोग हैप्पीनेस वर्कशॉप ये लोग--

बहोत सारे लोग वाटर पार्क में एक फैमिली डां नहा भी रही है लोग बैठे हैं खड़े हैं और सब वाटर पार्क में वाटर पार्क वाले कपड़े भी पहने जाते हैं।

और ये है एक प्रशासन भवन है यहाँ पे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है ये कलर से पुता हुआ है।

एक मंदिर टाइप से बना हुआ कुछ नजर आ रहा है वो फूलों से सजा हुआ है उस पे फूल माला बना चढ़ा हुआ है और एक घंटा वाला लगा हुआ है।

और हुई है और दोनों तरफ बने हुए हैं जो तीन तीन मंजिल के बने हुए हैं और ये हल्का पेंट कलर से वह है खंभा भी निकला हुआ है पाइप पड़ी हुई है।

यह बाइके कड़ी हुई है बाइको के पीछे रॅलिंग बनी हुई है रॅलिंग के बगल में एक गेट लगा हुआ है जो की येलो कलर का है गेट के अन्दर--

नज़र आ रही है जो बनी हुई है बहुत बड़े-बड़े आगे पेड़ लगा है पेड़ से छुपा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा साफ तरीके से --

ये एक मदिर टाईप से बना हुआ है और मंदिर बना हुआ है जोकि बहोत अच्छा लग रहा है दो मंदिर पे मंदिर बना है।

हम लोग जा रहे हैं शॉप की तरफ टोकरियां रखी हुई है फ्रिज बने हुए हैं। जिसमें चॉकलेट वगैरह लगाई होती बच्चों की बहोत सारा सामान लगा हुआ है।

ये पहाड़ है पहाड़ से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है जो की व्हाईट व्हाईट कलर सा पानी बहत अच्छा लग रहा है छोटे छोटे टीले पड़े हुए है आसपास पैर लगे हुए हैं।

आस पास पेड़ लगे हुए है छोटे छोटे भी घास भी लगी व बड़े बड़े भी पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारा शब्द से लिखा हुआ है बेकर बेकरी बेकरी नाम लिखा हुआ है रियल बेकरी नाम लिखा हुआ --

वे फंक्शन हो रहा है जोकि येलो कलर सारा बहोत सारा सजावट हुई है रात का समय है बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

ये एक गेट है गेट बहोत बड़ा लगा हुआ है गेट को खोलते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर तंबू लगा हुआ है जो की ग्रीन कलर का है।

ये एक शॉप है शॉप में इंडियन लिखा हुआ हैं ऑनियन रखा हुआ हैं यहां पे बोहोत सारा सामान मिलता हैं सीढ़ियां बनी हुई है शॉप में।

अबकी बाहर बाइके खड़ी हुई हैं और दो तिन बाइके खड़ी हुई है शॉप के बगल में बिल्डिंग बनी हुई है जो--